पलंग के ऊपर में गंदा बिछा हुआ है और कंबल रखा हुआ हैं।

अंदर में एक आदमी खड़ा है और बाहर में दो बुलेट गाड़ी खड़ा है।

एक खिड़कियां भी है और एक काउंटर जैसा बना है।

यहां पे बहोत बड़ा मेला लगा हुआ है और मेला में ढेर सारा आदमी है ।

ढेर सारा कार खराब है बाइक खराब है सब रखा हुआ है।

छोटे छोटे बच्चे दीवाल के सामने में खड़ा है।

पलंग पे गद्दा और बालचित सब बिछा के रखा है।

बाइक दो तीन खड़ा करके रखा हुआ है दो तीन बाइक है।

बीचों- बीच कारपेट बिछाया गया है और भी लगाया गया है साइड -साइड में --

कंबल रखा हुआ है गद्दा रखा हुआ है।

एक बहोत बड़ा घर है और घर के बाहर में बाउंड्री है।

ब्लू डस्टबिन है और एक हरा डस्टबिन है।

बाहर में एक लंबा सा पोल है।

एक बहोत बड़ा तालाब है और तालाब के उस साइड में तीन आदमी खड़ा है।

एक बोलरो भी।

अंदर में फ्रिज रखा हुआ है बहुत बड़ा बड़ा।

ऊपर में पंखा भी लगाया गया है और लाइट भी लगाया गया है।

मंदिर्क में एक बांस लगा हुआ है।